वैन खड़ी हुई है। बगल में स्कूटी भी एक दिख रही है। उसके सामने भी दो स्कूटी दिख रही हैं।

तामने प पंजाब नेशनल बैंक है। बैंक के बाहर तीन औरतें नकाब पहनकर खड़ी हुई हैं।

एक नदी है बहुत खूबसूरत सी नदी देखने में नजर आ रही है।

रेड और ब्लैक कलर की कारपेट बिछी हुई है एक लड़का अ टी-शर्ट पहन कर शॉट्स पहनकर मिरर में फोटो खींचता हुआ नजर आ रहा है।

एक मदरसा है। मदरसे में ए-बेंच बनी हुई है टेबल बनी हुई है।

उसके ऊपर लकड़ी से सजाया गया है। एक रॉड भी जलता हुआ नजर आ रहा है।

सामने एक येलो कलर का घर बना हुआ दिख रहा है। उसके बगल में एक बोहत बड़ा सा बोहत घणा सा पेड़ निकला हुआ है।

एक मूवी का थिएटर है। थिएटर काफी बड़ा-सा नज़र आ रहा है। रेड कलर का थिएटर बना हुआ है।

दूसरी कार साइड में खड़ी हुई है। कार के ऊपर टीन की शेड्स डली हुई है।

इक कपड़े का दुकान है। दुकान में ब्लू कलर की लाइट जल रही है। दुकान में सारे कपड़े हैंगर में टंगे हुए हैं।

एक जिम है। जिम में ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है। कारपेट के ऊपर बोहोत सारी मशीनें रखी हुई है।

दीवार पर एक येलो कलर का अ पंचिंग बैग भी रखा हुआ है।

इक रोड है। रोड पर कार जाती हुई नजर आ रही है। कार के आगे एक बड़ी सी दुकान है।